किले के पास एक झोपड़ी नुमा आकृति की एक घर भी बना हुआ है।

कुछ लोग गुफा के अंदर लग रहे हैं उनमें से एक इंसान हाथ उठाकर गुफा के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है।

कुछ लोग मोटरसाइकिल्स पर हैं कुछ लोग टेंपो से जा रहे हैं।

कुछ बड़े तो कुछ बच्चे लग रहे हैं कई लोग टहल रहे हैं।

यह एक कॉफी की दुकान है। इस कॉफ़ी की दुकान के नीचे सींस नाइंटीन फोर्टी नाइन लिखा हुआ है।

कई सारे फल हैं कुछ केले हैं कुछ संतरे हैं कुछ सेब है।

यहां पर एक जालीदार जंगला लगा हुआ है।

बस पर गेंदे के फूल की कलाकृति बनी है।

यह एक रेस्टोरेंट जैसा कोई इलाका लग रहा है।

यह एक कथा स्थल लग रहा है।

यहां पर घोड़ा के खाने योग्य खाना भी रखा हुआ है यह एक टीन शेड है।

वेह लोग आपस में एक दूसरे को देख रहें देखते हुए बात कर रहे हैं।

यहां पर एक ठेलीया खड़ी हुई है जिसे हम रिक्शा कहते हैं।

यहां पर कई सारी अलग अलग तरीके की लाइटें भी लग रही है।